और इस इसके ठीक सामने हमें कत्थई रंग का सामने दीवार पर कत्थई रंग का पेंट है और आगे काफी सारे वाहन और साइकिल वगैरा भी खड़े हुए हैं।

सामने एक ट्यूब लाइट लगी हुई है और नीचे दो काउंटर है जो की सफेद रंग के है उनके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है सामने प्लास्टिक की कुर्सी है और दीवार पर एक छोटी सी टी_वी भी लगी हुई है जो कि चालू है।

और कार के अंदर कोई भी नहीं बैठा हुआ है और यह एक पार्किंग लॉट टाइप की जगह दिखाई दे रही है जोकि बिल्डिंग के निचले वाले हिस्से में हुआ करती है ।

जो कि ये किताब खरीदने के लिए आए है।

इस तस्वीर में हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट वाले घर का जो अभी बन रहा है उसका दरवाजा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

उसके ठीक नीचे एक बड़ा-सा लकड़ी का शोकेस रखा हुआ है जिसके ऊपरी हिस्से में हम काफी सारे पैसे रखे हुए देख सकते हैं और नीचे वहां पे काफी सारे फुल की--

उसके ठीक बगल में हमें तीन गमले रखे हुए दिखाई दे रहे है जो की अलग-अलग प्रकार के पौधों के हैं सामने एक लड़का दिखाई दे रहा है जो कि अपने मोबाइल --

इस तस्वीर में हमें एक कपड़े का शोरूम दिखाई दे रहा है जोकि काफी स्वच्छ है और काफी सुंदर लग रहा है अंदर काफी सारी लाइट लगाई गई है फॉल सीलिंग है ।

इस तस्वीर में हमें एक स्टेशनरी की बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है जहां पर हम काफी सारे व्य कस्टमर्स की और व्यक्तियों की भीड़ को इकट्ठा देख सकते हैं जो की--

इस तस्वीर में हमें एक स्पोर्ट्स की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर खेल से संबंधित सारा सामान उपलब्ध दिखाई दे रहा है।

सामने हमें एक लकड़ी का शेल्फ दिखाई दे रहा है जहां पे हम बैडमिंटन वाले रैकेट टेनिस वाले रैकेट और फुटबॉल बास्केटबॉल ब और वॉलीबॉल खेलने वाली--

अलग - अलग प्रकार की बॉलों को रखा हुआ देख सकते हैं।

क्रॉस ख टंगा हुआ देख सकते है उसके आगे हमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसने गुलाबी रंग की शर्ट पहन रखी है और वो कुछ बोल रहा है ।

और हमें यहाँ पर रेलिंग भी दिखाई दे रही है जिसके किनारियों पे नीले रंग से पेंट किया गया है आस पास काफी सारे वृक्ष हैं।

और आसपास हम काफी सारे बच्चों को खेलता हुआ देख सकते है यहाँ पे हमें कुछ बच्चे ग्राउंड में बैठे हुए भी दिखाई दे रहे है जहाँ पे कुछ बच्चे --